बोहोत सारे लोंग काम कर रहें हैं। यहाँ पर बहोत ईटे और बारूद भी रखी हुई है।

अ में बहोत सारे वाहन चल रहें हैं। सड़क के किनारे कई दुकानें भी नजर आ रही हैं। कुछ वृक्ष भी लगे हुए हैं।

यहाँ एक क्लासरूम है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर बहुत लंबी-लंबी --

जिसमे की बहुत तरह के झूले लगे हुए है यहाँ पर बच्चे और बड़े तैर रहे हैं |

यहाँ एक किराने की दुकान है। यहाँ पर घर-गृहस्थी का सारा सामान मिलता है।

जैसे की तेल राशन डिटर्जेंट साबुन खाने की वस्तुएँ जैसे की जे चॉकलेट।

इस तस्वीर में एक बालक कुछ पेड़-पौधों को पानी दे रहा --

यहाँ एक मॉल है। मॉल के अंदर बहोत सारी दुकानें ह्। मॉल के अंदर --